कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे है जिसमे फूल खिले हुए है नीचे टाइल्स बिचा हुआ है म ज़मीन देखी जा सकती है।

कुछ बड़ी बड़ी मशीने भी दिखाई दे रही है नीचे लाल व काले कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है या पीछे बड़ासा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी पत्तियां हरी दिखई दे रही है या कुछ तहैनिया भी दिखाई दे रही है बगल में कुछ घेर दिखाई दे र्हए हैं कुछ द दुकान बनी हूई हैं।

यहां पर भी कुछ व्यक्ति देखे जा सकते हैं जो की लाइन में खड़े हुए हैं आगे एक स्कूटर दिखा दे रहा है हमारे बगल में एक ठेला दिखा दे रहा है ठेला लकड़ी का बना हुआ है पीछे--

यह पर कुछ रिक्शा दिखायी दे रहा है तथा कुछ ई-रिक्शा भी दिखायी दे रहा है रिक्शा का कलर --

एक कुछ सफ़ेद कलर से प्रिंट किया गया है जिस पर ब्लू कलर से कुछ लिखा गया है तथा यही से आगे छोटे व बड़े पैमाने पर ऊपर किया गया है ऊपर वाल दिखाई दे रहे है नीचे भूमि देखी जा सकती है।